और एक कार भी नजर आ रही है कार सफेद रंग की है।

एक डिस्क है डिस्क डिस्क एकदम खाली है और ऊपर पंखे भी रखे हो रखा हुआ है ।

वहा पर मांस का दिखाई दे रही है।

बड़े-बड़े पीसेस मास के रखा हुआ है और व्यक्ती भी खड़ा हुआ है और लाइटिंग भी है।

और सारे लोग बाहर वे बाहर इंतेज़ार कर रहे है और।

यहां पर एक गाड़ी की सर्विस दिखाई दे रही है और एक छोटा सा दुकान भी है।

यहां पर एक व्यायाम करने की जगह दिखाई दे रही है यहां पर तीन च चार मशीनस भी दिखाई दे रही हैं ।

यहां पर तीन गिटार प्यानो तबला बैंड।

और कुछ पेन से लिख रहा है और दूसरा व्यक्ति एक बैग लटकाया हुआ है और वह भी लिख रहा है।

सीरम के बॉटल्स शैंपू।

और उसके पीछे एक तनिष्का तनिष्क सोने का शोरूम दिखाई दे रहा है।

और मेज भी दिखाई दे रहे हैं और अ सिला सिलाई की मशीन भी रखी हुई है।

और और माला पर और एक टंकी लगाई हुई है पानी की ।

और उसमें छतरियों से सजाया हुआ है तीन छतरियां लगाई हुई है सूरज उगता नजर आ रहा है।

यहां पर एक लाल रंग रंग का फूल दिखाई दे रहा है वो फूल के बहुत सारे--

यहां पर कई सारे लोग मौजूद हैं।